रेलिंग्स जो है निकाले हुए है और उनको एक पिलर पे खड़ा किया हुआ है फिर नीचे मे दो लोग दो आदमी है न --

इस इमेज में हमें नदी के किनारे का पिच्चर जो है दिखाया जा रहा है साइड में एक छोटा सा गोल --

इसमें लोग जो हैं कुछ पार्टी फंक्शन में से निकल रहें हैं और कुछ जा रहें हैं। इधर परदे भी टांगे --

साइड में एक रोड भी है।

इस इमेज में हमे भगवान की मूर्तियों को दिखाया या है जोकी स्टैचु बनाया गया है और उन्हे स्टेज पर रखा गया है।

इस इमेज मे हमे एक घर को भी दिखाया जा रहा है और दूर-दूर तक बहुत सारी पेड़े भी है जो दिख रही है और इसमे बहुत सारी पोल्स भी लगी हुई है लाइट भी और इसमे --